है और उसमें मछलियां भी दिखाई दे रही है जोकि रेड --

कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं।

इसमे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बाईके दिखाई दे र--

और अलग अलग तरह की बेल्ट दिखाई दे रही है।

एक रेड कलर की चेयर भी दिखा--

वहां एक और पेड़ पौधे दिखाई दे र--

कि कुछ बच्चे नहा रहे है।

ये कुछ लेडिज बैठी हुई हैं ऐसा लग रहा कोई मस्जिद है।

होटल जैसा दिखाई दे रहा है।

एक शॉप जैसा दिखाई दे रहा है शॉप के अंदर कुछ चीजें--

और पानी में कुछ धरती में समा--

स समुंदर जैसा दिखाई दे रहा है हरे भरे पेड़ और छोटी छोटी घासे--

गाड़ियों का कलर सफेद और रेड है।

पर वो भी लिखा हुआ है बलैक कलर की गाड़ी भी है।

जो की शॉप में खड़े हुए हैं।